इस-इस गिले के अंदर एक आदमी घुस रहा है। वहाँ पर बैठ कर खतोरो के चोंचे हुए है। वहाँ पर बैठ कर देख और घुसने की कोशिश भी कर रहा --

और यह पर डांस पार्टी और यहाँ पर बोहोत सारे रंग के लाइटो भी डाल रहे हैं और यहाँ पर --

और यहाँ पर ये बड़ा सा पाइप और वहाँ पे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं |

और वहाँ पर बोहोत बोहोत आदमी खड़े हुए है।

पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक दरवाजा पड़ा हुआ है और यहाँ पर--